फूलो की दुकान है और पिंक कलर के है रेड कलर के है और ब्लू कलर के है व्हाइट कलर के है येल्लो कलर के है और कुछ ये टेबल रखी हुई है कुछ मेज रखी हुई है।

यह एक सब्जी की दुकान है उसमें कुछ गोभियां और कुछ पपीते कुछ लहसन प्याज़ वगैरह कुछ गाजर और कुछ फल है कुछ और में कुछ लोग भी हैं।

तोरी भी है भिंडी भी है खीरे भी है शिमला मिर्ची भी है करेले भी है बैगन भी है और कुछ तराजू वराजू भी रखी हुई है और कुछ लोग भी हैं।

यह एक झील है पानी से भरी हुई जिसमे कुछ पेड़ पौधे भी उग रहे हैं।